जैसा की हम देख सकते है सामने हमको पेड़ दिख रहा हैं जो की हरा हरा दिख रहा है जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ पर हमको नीचे पेड़ों के नीचे हमको झाड़ियाँ दिख रही है जो की सुखी हुई लग रही है।

लकड़ी की बाउंडरी वॉल बनी है जो की बहुत अच्छी लग रही हैं बहुत ही सुन्दर और बहुत ही अच्छी लग रही है ऊपर खुला आसमान दिख रहा है जो की बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुन्दर लग रहा है बहुत ही अच्छा नजारा हो रखा है जो की बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लग रहा है।

जैसा की हम देख सकते है सामने हमको पहड़िया दिख रही है जो की बहुत ही सुंदर पहड़िया दिख रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है पहड़िया हमको हरी हरी इसलिए दिख रही है क्योंकि इसके ऊपर पेड़ लगे हुए हैजो की बहुत ही सुंदर पेड़ दिख रहे है जो की बहुत ही अच्छे लग रहे है।

सुखी हुई घास भी दिख रही है जो की बहुत ही अच्छी लग रही हैं बहुत ही सुन्दर लग रही है बहुत ही प्यारी लग रही है ऊपर हमको एक एरोप्लेन उड़ते हुए दिख रहा है जो की बहुत ही बढ़िया लग रहा।

जैसा की हम देख सकते है सामने हमको बस स्टेशन दिख रहा है बस स्टेशन में बस खड़ी हुई दिख रही है जो कि लाल कलर की बस दिख रही हैं जो कि बहुत ही सुन्दर दिख